और यहा पर घूमे वूमे का घूमे वूमे का साधन बहुत है यहा पर आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं।

अपन लोग देख सकत है की बोहोत ही गाड़ी यहाँ पे रखल बारी यहाँं आप लोग को गाड़ी भाड़े पे मिल सकत वारे और यहाँ पे बोहोत ही अच्छी-अच्छी महंगी-महंगी गाड़ी आप अपन लोग को भाड़े पर मिल सकत है।